पूजा की थाली राखी हुई है और रोजेज वगैरा रखे हुए है।

ये एक रूम है जिसके दीवाले ब्लू कॉलर की है और यहां पर कुछ स्टिकर्स वगेरा भी लगे है और कुछ व्हाइट का उपर --

ये एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसपे रेड और येलो कलर का जो हैघर है व्हाइट है और ग्रीन का पूरे घास है और यहां पेड़-पौधे है।

ऊपर वाइट कलर की गैलरी भी हैयहाँ पे और कोई आदमी अंदर बैठा भी है शॉप पे।

यहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है व्हाइट कलर की शर्ट पहन के और कंप्यूटर पे एक मैडम कुछ पढ़ा रही है व्हाइट कलर का दिवाले है ऊपर सेलिंग मे पंखे लगे हुए है लाइट्स लगी हुई हैऔर पानी की बॉटल भी रखी हुई है।

देखिए रेड कलर की व्हाइट कलर की यहां पर दीवाले है और ग्रीन कलर की भी दिवारे है यहां एक।

और नीच साइड में जो है एक रेड कलर की मुझे दुकान टाइप की भी शो हो रही है राइट साइड माँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

और व्हाइट कॉलर की चेयर रखी हुई है पीछे कुछ लोग खड़े है और मिनर मिरर भी दिख रहा है रेड और ब्लू कॉलर का कारपेट है।

यहां पर बहुत सारे लोग की बाइक खड़ी हुई है तीन लोग मुझे दिख रहे है।

बिजली के खम्बे है और रिक्शे आ रहे जा रहे है।

ब्लैक कलर का पीछे पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है जहां पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं और लड़का अपनी सेल्फी ले रहा है यहां पे--